काफी बड़ी दुकान है कपड़ों की इसमें आदमियों के कपड़े है टाइल का रंग व्हाइट है कुछ लाइटें लगी हुई है।

रूम है जिसकी वाल्स पर बहुत ही कलरफूल डिजाइनिंग की हुई है टेबल लगे हुए हैं कुछ चेयर्स हैं।